नमस्कार mporting mesh files in openfoam पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे: openfoam में meshing सॉफ्टवेयर का उपयोग करके mesh फाइल्स को इम्पोर्ट करना
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऊबुंटु वर्जन 1204
पूर्वापेक्षा के रूप में यूजर को पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर्स जैसे gambit ansys icem cfx salom आदि में mesh कैसे बनाना है
blockmesh का उपयोग करके हम आसानी से सरल geometries बना सकते हैं उदाहरण के लिएbox pipe आदि blockmesh का उपयोग करके जटिल geometries बनाना मुश्किल है
लेकिन openfoam third party meshing सॉफ्टवेयर से mesh importing करने का समर्थन करता है इन mesh फाइल्स को importing करने के लिए openfoam में कमांड्स उपलब्ध हैं
हम अब इन files को import करना सीखेंगे
हमारे कैस की geometry यहाँ है हमारे पास एक स्क्वैर सिलेंडर है: length 1m और height 1m है inlet velocity 1 m/s है
हम इसे reynolds number re = 100 के लिए हल कर रहे हैं चुना गया डोमेन 40m by 60m है boundary conditions डायग्राम में दिखाई गई हैं
यह meshing सॉफ्टवेयर में बनाई गई mesh file है
आपके openfoam working directory में icofoam solver पर जाएँ और इस पर click करें
अब cylinder name का folder बनाएँ
अब cavity case पर जाएँ cavity case से 0 और system folders को copy करें
इसे cylinder folder में paste करें ध्यान दें आपको constant folder की आवश्यकता नहीं है
मेरे desktop पर मेरे पास dot msh extension के साथ fluent mesh file है इसे cylmesh msh named दिया है
इस file को icofoam में cylinder folder में copy और paste करें हमारा setup अब तैयार है
command terminal खोलें run type करें और enter दबाएँ
type करें cd space tutorials enter दबाएँ
type करें cd space incompressible और enter दबाएँ type करें cd space icofoam enter दबाएँ type करें cd space cylinder और enter दबाएँ
fluent mesh file के लिए command terminal में हमें fluentmeshtofoam ध्यान दें यहाँ m t f capital हैं space cylmesh msh type करने की आवश्यकता है और enter दबाएँ
terminal पर आप देखेंगे कि mesh फाइल अब openfoam data फाइल में बदल गई है
अब cylinder folder में वापस जाएँ
constant folder बन गया है इसे खोलने के लिए constant folder पर click करें
transport property file constant folder से गायब है
दो स्तर तक वापस जाएँ और cavity case के constant folder से transport property को copy करें
इसे cylinder के constant folder में paste करें जिसे हमने अभी बनाया हम default viscosity रखेंगे
terminal पर वापस जाएँ
ध्यान दें हम यहाँ blockmesh command रन नहीं कर रहे हैं mesh file में boundary conditions देखने के लिए
constant> polymesh पर जाएँ ls type करें आप boundary फाइल देखेंगे
अपने पसंदानुसार इसे किसी भी editor में खोलें
boundary condition names geometry slide में दिखते हैं
boundary names में किसी भी error के मामले में आप boundary file को देख सकते हैं इसे बंद करें
terminal में दो स्तर तक वापस जाएँ और 0 zero folder पर जाएँ
0 zero folder में pressure file खोलें
ध्यान दें boundary names boundary file से मेल खाना चाहिए यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदलें इस file को बंद करें
एक स्तर तक वापस जाएँ और system folder पर जाएँ
controldict file खोलें
हम controldict फाइल के end time को बदलेंगे इसे बंद करें
एक स्तर तक वापस जाएँ iterations शुरू करने के लिए type करें icofoam और enter दबाएँ iterations running terminal में दिखेगा
geometry देखने के लिए type करें parafoam और enter दबाएँ paraview window में object inspector menu में apply button पर click करें
आप geometry देख सकते हैं active variable control menu में solid color को u velocity में बदलें
प्रारंभिक velocity condition यहाँ दिखती है
ऊपरी दाईं side पर vcr menu में play button पर click करें
हम time के पैसेज के साथ velocity contours देख सकते हैं
paraview window बंद करें
अन्य meshing सॉफ्टवेयर से geometry को import करने के लिए यहाँ commands की एक सूची है
नियतकार्य के रूप में
इस tutorial में हमने अन्य meshing सॉफ्टवेयर से geometry को importing करना सीखा
निम्न url पर उपलब्ध video देखें:
spoken tutorial project teamspoken tutorial का उपयोग कर कार्यशालाएं आयोजित करती है ऑनलाइन परीक्षा पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है
spoken tutorial project talk to a teacher project का एक हिस्सा है यह आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा mission एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा समर्थित है इस mission पर अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है:
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद